ट्रैक्टर जो है वो ब्लू कलर के हैं और कुछ पोस्टर लगे हुए हैं पीछे की तरफ।

बोर्ड है सामने जो है वॉलपेपर लगा है साइड में भी वॉलपेपर लगा हुआ है और एक गेट है जोकि कांच का है।

और यहां पर दो चेयर दिखाई दे रही हैं।

ब्रेड डबल रोटी के पैकेट रखे हुए--

और इसके अलावा यहां पर आसपास कुछ और नजर नहीं आ रहा सिर्फ ये थैली और ये अजीब सी चीज नजर आ रही है फोटो में।

कुछ लोग हैं जो चेयर पर बैठे हैं मिकी माउस वाला झूला दिखाई दे रहा है।

और यहां पर दीवार पे प्रिंटेड दीवार है टेबल पे सॉस की बोतल रखी हुई दिखाई दे रही है और कुछ या नैपकिंस रखे हैं।

साइकिल की दुकान है और यहां पर काफी सारी बच्चों की साइकिल और स्पोर्टस साइकिल रखी हुई है।

और एक कार खड़ी हुई है बहार वाइट कलर की कार है।

और इसी के साथ में लिखा है द बर्गर क्लब ।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

और पीछे लिखा है यू डोंट नो --

सामने लिखा हुआ है बस्टर डेयरी फार्म --

इस फोटो में एक टेबल है टेबल पे एक जग रखा है एक गिलास रखा है।

सामने लिखा हुआ है ढिशुम सिनेमा और ऊपर लिखा है मस्ती जोन बी द गेम --

नंबर है एच_आर ट्वेंटी सिक्स सी_बी डबल टू डबल सी --

और बाहर एक कुत्ता खड़ा है जिसका रंग काला है एक गेट है काले रंग का।

और नीचे मिट्टी हि मिट्टी है कुछ पेड़ नजर आ रहे हैं।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

और काफी सारे लोग यहां पर खड़े हुए हैं।

अंदर काफी सारे बच्चों के आइटम्स नजर आ रहे हैं।

सामने एक गाड़ी खड़ी है जिसका नाम है इंडिगो कुछ लोग बाहर खड़े हुए हैं एक लेडी है जो चेयर पे बैठी हुई है।